फेडरल बैंक की तस्वीर है बैंक बहोत ही बड़ा और सुंदर है।

एक टीचर उन्हें पढ़ा रहा है और सामने बोर्ड पर लिख रहा है।

एक कार्यालय की तस्वीर है बहोत बड़ा कमरा है जिसमें सुंदर खिड़कियां लगी हुई है।

ये सड़क कचरे पड़ी हुई है।

ये तस्वीर एक मंदिर की है।

यहां कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर बहोत सारे लोहे के सामानों की है।

इनको लड़कियों के कपड़े पहनाए गए हैं ये किसी मॉल के बाहर खड़े हैं।

यहां बहुत सुंदर बड़ा मॉल है।

बस के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक टीचर भी खड़ी है।

उसमें बहोत सारी हरि घासे और पौधे लगाए हुए हैं।

और यहां कोई पोल भी लगाए गए हैं जो बड़े--

और शीशे भी दीवारो पर लगाए--

दीवारों पर पेंटिंग लगाई गई है।

यहां बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे--

मैदान के अंदर वो लोग खेल रहे हैं।

इसमें दीवारों को पेंटिंग से सजाया गया--

ये बहोत ही सुंदर और बड़ा है।